यहां पे सफेद कलर का गाड़ी भी है।

और उसके अंदर बहुत सारा बत्ती लोग जल रहा है।

इस तस्वीर में हम लोगो को एक बड़ा सा जेल दिखाई जा रहा है जहां बहोत सारा पानी जमा हुआ है।

इस तस्वीर में हम लोगों को बहोत सारा डिफरेंट डिफरेंट कलर का टाइल्स दिखाया जा रहा है।

पीछे साइड में बहुत सारा ट्री भी है।

यहां पे बहुत सारा कुट्टी लोग भी है और उसके पीछे बहुत सारा ट्री भी है।

इस तस्वीर में हम लोगों को बहुत बड़ा व्हाइट कलर का बिल्डिंग दिख रहा है।